क्योंकि हर एक मोड़ पे मुड़ नहीं सकता। बस के लिए कुछ अच्छा ही रोड होना चाहिए।

दुकान छोटी-मोटी ही रखवा दे लेकिन रख देनी चाहिए किसी से या तो रखवा दें।

और सरकार को इसपे जरूर सोचना चाहिए।

जो की मरीज आ बोहोत जल्द पहुंचे जाए ऑटो से या कोई भी चीजों से। इसे जल्द से पहुंचे यहाँ --

ये कपड़ा व इलेक्ट्रिक का दुकान में ऐसा कुछ दूकान हमारे इर्द गिर्द होना चाहिए। मान लीजिये अभी कोई जरूरत पड़ जाए मान लीजिये कभी होता है की अंडरवियर नहीं है कछा नहीं है कुछ बंडी नहीं है एक बैग --

कितना अच्छा लगता अपने ग्रुप के सब के साथ पिक खिंचाना या अपने फ़्रैंडों के साथ अपने घर वाले फ़ैमिली के साथ।

हर एक पच्छी अच्छी है मगर वहीं सब चीजों को देखने चिड़ियाघर जाना पड़ता है। यहाँ गाँव घर में कभी कभी आदमी देख भी लेते है।

शहर में बहुत क-अ-बहुत अ-कम चान्स रहता है देखने के लिए। बच्चे देखते हैं बहु खुश होते हैं।